और बहुत सा और भी सामान दिखाई दे रहा है किराने और एक दुकान दिखाई एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।

की बोतल दो गिलास एक जग एक आदमी बेठा हुआ है और बहुत सारे आदमी ठेले की सामने खड़े हुए दिखाए दे रहे है।

इस इमेज मे मुझे मॅगी की पॅकेट दिखाई दे रही है मॅगी मसाला दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है चायपत्ति दिखाई दे रही है चाउमीन की पॅकेट दिखाई दे रहे है।

इस इमेज मे मुझे एक शोरूम दिखाई दे रहा उसमे बहुत सारे तिरंगे कलर के फले फुगे लगे हुए दिखाई दे रहे है गेट बना हुआ है बहुत सारे स्कूटी रखी हुई दिखाई दे रहे और मोटर साईकल रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में मुझे बहुत बड़ी बिल्डिग दिख रही है जो की बीस पच्चिश मजिल की होगी और एक दो हाथी दिकित और हाथी पे दो आदमी बैठे दिखाई दे रहे है मूर्तीया और तलवारे रखे हुए है।